एक सामने अ ऑटो लगा हुआ है जो माल ढोने वाली है उसपे एक बैनर लगा हुआ है।

बैनर में बोहोत कुछ लिखा हुआ है और बहोत सारी मोटर साइकिलें भी खड़ी है।

अ पेट्रोल पंप के फ्रंट पे अ पार्क जैसा बना हुआ है।

और अ इसका अच्छा से डिजाइन किया गया है वो लाइट जो है हरी पीली नीली लाल लाइट जल रही है अच्छा डेकोरेशन किया गया है इसका।

कुछ घर बने हुए हैं और जिसका कलर व्हाइट उजला है और लाल कलर का इसका बॉर्डर को पैंट किया गया है।

ये घर पे बहुत सारा बड़ा एन्टीना दिख रहा है जो की पाइप में है सामने में पेड़ छोटे-छोटे पेड़ हैं ।

यह पेट्रोल पम्प है और बहोत बड़ा पेट्रोल पम्प है सामने मशीने दिख रही है इसकी और पेट्रोल पम्प का ऊपर का कलर जो है इसका पीला है।

फॉर्म है जो शाम का अ सीन हो सकता है और बहुत से लोग पे प्लेटफार्म के एक तरफ खड़े हैं दूसरी तरफ भी बोहोत से लोग हैं।

और पीछे बैरिकेड के अंदर एक गाड़ी लगी हुई है और आसमान भी दिख--

नीचे ट्रैक बिछा हुआ है जो ओवरब्रिज बना हुआ है वो रेड के बॉर्डर से है बाकी का हिस्सा व्हाइट कलर से पेंट और आस-पास में बहोत ग्रीन है पेड़ है।

और पीछे के तरफ बहुत सारे खेत दिखाई दे रहे है बहुत फ उसमें फसल है।

किनारे य अ एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड बोर्ड में बहुत सारे इनफॉरमेशन है और लोगो है।

नदी में पानी भरा हुआ है और आसमान साफ है।

ये पुराने स्ट्रक्चर में बनी हुई है जो अ पीले कलर का ईंट दिखाई दे रहा है इसमे।

रेस्टोरेंट मे बहोत सारे अ-अ-कुछ लोग बैठे हुए हैं और बहुत खूबसूरत-अ इसकी लाइटिंग की गई है और ये बांस से बना हुआ है।

सामने दो मोटर साइकिल दिख रहा है और इसमे लाइटे जल रही हैं और रात का ये मंजर है।